इ फोटो कोनो दोकान के जय में स्टॉप रखा हुआ है इधर आदमी बैठा हुआ है इधर चिप्स उप्स टांगल हो।